ये पी_टी - उटी भी बढ़िया से चल रहा है भाई सब चीज ठीक है और सब बस उस भी बढ़िया से लग रहा है सब चीज है गाछ-वृछ भी सब चीज है बढ़िया है स्कूल हरा-भरा है।

कचरा वाला भी लगा हुआ है ठीक है बहोत बढ़िया है रंगीन बहोत है ऐ_सी उसी सब कुछ लगा हुआ है ठीक है भाई।

और सब चीज ठीक -ठाक है बहोत है भाई --